दोनों साइड हरियाली दिख रही है। बीच में से रास्ता है। सड़क और बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुन्दर लग रहा --